एक मेन गेट नजर आ रहा है।

गेट पर हमें एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट को नीले पीले लाल गुब्बारों से सजाया है सुंदर लाइटनिंग है।

यह हेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल सैलून है।

इस दृश्य में हमें बहुत सारे विद्यार्थी पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे है।

इस चित्र में हमें एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है।

इस दुकान में हमें बहोत सारी साइकल्स दिखाई दे रहीं हैं।

किरन बहोत ही सुंदर है आस पास हमें बड़े हरे वृक्ष नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक पार्क नजर आ रहा है।

बच्चा गेंदे के फूलों के बीच खड़ा हुआ है।

कमरे में हमें भगवान की मूर्तियाँ तथा तस्वीर रखी दिखाई दे रहीं है।

भूरे रंग का हिरण नजर आ रहा है।